और यहाँ पे बहुत सारे एंटीना हैं काम कर रहे हैं धूप का टाइमिंग है टोपी है और सर पे यहाँ पे--

और यहां पे भारत सरकार दिखाई और बेतिया--

उस लिखा गया है दीवाल का कलर व्हाइट है।

फैन है व्हाइट कलर का पी_ओ_पी किया गया है जो व्हाइट कलर के--

और यहाँ के बिल्डिंग है वाइट कलर की खिड़कियाँ हैं यहाँ के काँच के और यहाँ आसमान नीला है धूप भी दिखाई दे रही है पेड़ है।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ पे है--

पेड़ है यहां पे और यहां पे पीछे जंगल भी है।

मैदान भी है जो दिख रहा है और यहां पे धूप भी दिखाई दे रही है आसमान नीला नजर आ रहा है।

ऊपर ले जा रहे हैं गाड़ी से और वहाँ पे आसमान नीला नज़र आ रहा है।

एयरपोर्ट है और यहां पे लोग वर्कर काम कर रहे हैं धूप भी दिखाई दे रही है।

प्राइवेट लिमिटेड है रिलेज है अ मुरारा --

यहाँ पे बहुत सारे तेल के डब्बे हैं जो यहाँ पे एक बड़ी सी कंपनी दिख रही है।

यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान है और यहाँ पे फाउंटेन है जो पानी ऊपर जा रहा है।

यहां पे दुकान है जो सैमसंग विजयश्री लिखा गया है।

वॉच है हाथ में की भी है दिवाल पर की भी है है यहाँ पे।

में फाइल लेकर और यहाँ पे खिड़कियाँ हैं।

बुक्स रखे गए सामने और यहाँ पे लाइटिंग चालू है घड़ी है।

है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं।

एक दीवाना आदमी जा रहा है और यहाँ पे एक लड़का है जो--

हाथी पे एक आदमी बैठा हुआ है बहुत सारे फंदे है यहाँ पे।

ब्लू लाइटिंग के लिए और यहां पे लोग आए हुए हैं।

यहाँ पे है एक जंगल है बहुत बड़ा सा।

आसमान का अक्स दिख रहा है आसमान नीला है और--

लाल कलर का चादर बिछाई हुई है कपड़े फेंके हैं और दीवार का कलर वाइट है।

है न यहाँ पे और यहाँ पे टेबल है और डस्टबिन है चप्पल भी है यहाँ पे और गाड़ी की चाबी रखी गई है यहाँ पे।

बेचने के लिए बहोत सारे है यहां पे और यहां पे खरीद रहे है आ रहे है लोग--

वहां पे भी लेडी है जो झाड़ रही है सारे पत्ते को दूर कर रही है अन्दर अन्दर--

एक लेडीज़ भी है अंदर और आसमान यहाँ पे थोड़ा सा नीला दिख रहा है थोड़े से बादल भी हैं यहाँ पे।

ये अलग-अलग मशीनें हैं टेबल है नीले कलर का दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पर अलग-अलग लगाई हुई हैं।

क्योंकी फेविकॉल के डब्बे है बड़े से लेके छोटे तक जो रखे गए है।

येलो कलर के भी डब्बे है और यहां पे बहोत सारे बॉक्सेस है अलग अलग--

जो बॉटल वगैरा रखे हुए हैं और यहां पे बिल्डिंग है।